मसीन है व्हाइट कलर का असल में ये बहुत सारे भी लगे हुए हैं व्हाइट कलर --

ब्राउन कलर से बॉर्डर बना हुआ है व्हाइट कलर की दीवाल है एक बाहर।

और स्टेप लॉयर भी रख --

ये यहाँ पे में देख पा रही हुँ यह इंडियन ऑयल है यहाँ पे पेट्रोल भरवाया जाता है यहाँ --

जैसे कि मे देख पा रही हूं यह केनरा बैंक है जो की केनरा हमारे व्हाइट से लिखा हुआ है ब्लू कलर से --

जैसा कि मै देख पा रही हूं एक आदमी समुन्द्र के किनारे बैठा दिखाई दे रहा है जो कि --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक बस अड्डे है जिसमें बहोत सारी बसे दिखाई दे रही हैं ग्रीन --

जैसा कि मे देख पा रही हूँ ये कार शोरूम है जिसमे बहौत सारी कारें नज़र आ रही हैं और व्हाइट कलर के टाइल्स भी लगे हुए हैं।

दिवाल इसकी व्हाइट कलर की है खिड़कियां भी नज़र आ रहीं है तीन खिड़कियां है इसमें।

जैसे कि में देख पा रही हूँ यहाँ की सड़क बहुत ही साफ है और यह सलेटी कलर के साइड एक बाईक खड़ी हुई --

जैसे कि मे देख पा रही हूं यहां पे एक गाना गाती हुईं ये औरत एक --

जैसे कि में देख पा रही हुँ यह गुफा टाइप की नज़र आ रही है जो की ग्रीन टाइप की है इसमें रैलिंग भी लगी है जो कि सिलेटी कलर की है।

जमीन ग्रीन कलर की दिख रही है ग्रीन कलर के पेड़ भी नज़र आ रहें हैं एक लाइट भी नज़र आ --

जैसा कि मै देख पा रही हूं यहां एक बॉक्स है जिसमें बहोत सारे रॉकेट नज़र आ रहे हैं रॉकेट लिखा हुआ रेड कलर से है।